फर्श पर गद्दे बिछे नजर आ रहे हैं पर्दे लगे नजर आ रहे हैं।

पिक्चर में आस पास खम्भे लगे नज़र आ रहे है।

पिक्चर में कुर्सियां रखी नजर आ रही है।

पिक्चर में घर बना नज़र आ रहा है।

फोटो लगी हुई नजर आ रही हैं टेबल पर लैपटॉप रखा नजर आ रहा--

पंखा लगा नजर आ रहा है लाइटें जल रही हैं।

टी_वी लगा हुआ है टेबल पर कुछ फाइलें रखी नजर आ रही हैं ए_सी नजर आ रहा है।